उसी तरह का यह मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें एक मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से होते हुए कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं।

रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर इधर इस पार और उस पर कोई भी यात्री गण नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसा लगता है मानो नए नए बनकर प्लेटफार्म तैयार किया गया है।

ये चिड़ियाघर का एक गेट दिखाई दे रहा है जो सड़क के बिल्कुल बगल में स्थित है इसी तरह यहां पर दिखाई--